साबुन बहुत सारे प्रकार के दिखाई दे रहे हैं।

इस दृश्य में बस दिखाई दे रहा है जो बस के रंग पीला और उजाला कलर से पेंट किया हुआ है।

में एक आदमी सेल्फी खिंचवाते हुए नजर आ रहा है जो इअर फोन लगाया हुआ है और हाथ में बोतल लिया हुआ है।

पोस्टर पर कुछ लिखा भी है जो अल्फ कंप्यूटर सेंटर ।

इस दृश्य में गैरेज का दुकान है जो दुकान के अंदर बहुत सा छोटे छोटे सामग्री रखा हुआ है।

इनका दीवाल का रंग आसमानी कलर से पेंट किया हुआ है जो हल्के हल्का दिख रहा है।

इनका कलर लाल और उजाला कलर से पेंट किया हुआ है।

इस दृश्य में बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है जो इसमें बहुत सारे खिड़कियां है।

इसमें बहुत सारे तार भी खींचा हुआ दिखाई दे रहा है।

कुछ पर्दा दिख रहा है गुलाबी और नीला कलर का बहुत सारे पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

कुछ पर्दा भी लगाया हुआ है जो पर्दे का रंग कुछ गुलाबी कलर का है।

इस दृसय में साइकिल है जो साइकिल का पेंट नीला कलर से किया हुआ है।

रंग सफेद कलर से किया हुआ है।

इस दृश्य में रेख दिख रहा है जो रेख का रंग गुलाबी या कुछ हरा कलर का दिख रहा है।

एक कार लाल कलर का दिख रहा है जो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है एक कार और चल रहा है।

इसमें एक भगवान का तस्वीर भी दिख रहे है जो हल थोड़ा थोड़ा दिख रहे हैं इसमें।

इस दृश्य में बड़ा सा हॉल है जो हॉल के अंदर दो लड़के डांस करते हुए नजर आ रहे हैं।

बहुत सारे लेडीज भी दिख रहे हैं और जेंट्स भी हैं।

इस दृश्य में बैंक दिखाई दे रहा है जो बैंक के ऊपर कुछ पोस्टर पर लिखा हुआ है स्टेट बैंक ए_टी_एम ।

एक घर भी है जो घर का रंग सफेद कलर से पेंट किया हुआ है।

दीवाल जो दिख रहा है जो दीवाल का रंग सफेद कलर से किया हुआ है।